भवन बहुत ही प्राचीन है तथा सुंदर है।

इस चित्र में हमें एक ऑफिस का कमरा नजर आ रहा है।

यहां पर एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है टेबल के ऊपर हमें कुछ फाइल सदा पेपर दिख रहे हैं।

इस कमरे की दीवार पीली तथा लाल है।

अगरबत्ती पेयर कप एवं साबुन बनाने की मशीन मिलती है।

होटल के काउंटर पर हमें एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है।

इस दीवार पर हमें एक लाल रंग का फायर एक्सटिंग्यूशर नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक आंगन नजर आ रहा है आंगन में हमें कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हे।

इस चित्र में हमें एक जिम का दृश्य नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है।

चर्च के बाहर हमें एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक दुकान नजर आ रहीं हैं।

इस घर के बाहर हमें हरे-हरे वृक्ष तथा पौधे दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में नीला आकाश दिखाई दे रहा है।